यहां पर बहुत सारी बाईकें भी दिखाई दे रही हैं यहां पर कुछ लोहे की ग्रिल भी लगी हुई दिखाई--